जो होता है हॉस्पिटल का फोटो लाग रहो है यहाँ दो आदमी खड़े हैं एक बाहर खड़े हैं और पहने तो इसे ही है जैसे हॉस्पिटल में पहने होते हैं पेंट शर्ट बढ़िया टाइल हैं पंखा लगी हैं लाइटिंग हैं।

बोहोत पत्थर पड़े हैं। झाड़ी-झाड़ी हैं बोहोत हरे-हरे रंग पीले-पीले रंग की घांस है अहयान। पहाड़ों देख रहे हैं यहाँ से हमें।

चा मे तो बहुत बड़ों खजूर का पेड़ है आगे ही या तो इत्ती बड़ी चट्टान है बोहोत बादल है पहाड़ है।

यहाँ एक मेडम है जो सिखा रही हैं डांस वो तो एक पीछे खड़े हैं लग रहे हैं बीडीओ बना रही हैं।

जहां एक ती झरना चल लो ह पीछे तीन चार लोग नहाए रहे हैं।

जे तो बहुत होशियार लाग रहे हैं। कोई से कुछ कर रहे होंगे इत्ते लोग खड़े हुए देख रहे हैं जी बना रहे है बस इधर से डार रहे है इधर से तेल निकाल रहे हैं।